इस तस्वीर में सामने एक गेट नजर आ रहा है जो ब्राउन कलर का है।

इसके अंदर एक रास्ता जा रहा है जिसके किनारे एक ईमारत है जो सफेद रंग की है सामने कुछ लोग खड़े हैं और आस-पास बोहोत सारे पेड़-पौधे हैं।

इस तस्वीर में सामने एक नदी नज़र आ रही है जो काफी बड़ा है बीच में कुछ बॉट्स नज़र आ रहे है।

जिनमें कुछ लोग बैठे हैं आस-पास बहोत सारे पेड़-पौधे नजर आ रही है और सूरज डूब रहा है।

इस तस्वीर में सामने एक इमारत नज़र आ रही है जो पिंक कलर की है इसके सामने एक बाइक भी खड़ी हैआसपास बहुत सरे पेड़-पौधे नज़र आ रहे है।